यहाँ किसी कॉलोनी का नजारा है जहाँ पे काफी ऊंची बिल्डिंग हैं बिल्डिंग मे ऑफिस टाइप बने हुए है घर बने हुए हैं।

उसके बाद इसमें प कपड़े सुख रहे है ए_सी लगी हुई है कूलर लगे हुए है और इस अपार्टमेंट के बीचों-बीच एक छोटा सा अ सर्कल बना हुआ है जिसमे मिट्टी है काफी सारे पेड़ है इस --

और ये ऑरेंज कलर की पूरी बिल्डिंग इसमें लाइट्स लगी हुई हैं पीछे साइड कुछ सीढ़ियां हैं जिसका एक गेट जा रहा है और कुछ हॉल टाइप के बने हुए हैं इनमें--

अहाँ हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है तरह तरह की बिल्डिंगे ऊपर साइड को भी बनी हुई है जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है चारो तरफ बिल्डिंग है मंदिर है नीचे हमें गलियां नज़र आ रही है जहाँ गाडियां खड़ी हुई है और हरियाली हैं।